फेमस जगह की फोटो हो सकती है यहां पर एक दुकान है।

यह किसी मंदिर चर्च या किसी और चीज की फोटो हो सकती है।

यह एक फोटो किसी दवाई वाले दुकान की लग रही है यहां पर काफी दवाई के समान रखे हुए हैं।

एकदम छोटे तथा एकदम बढ़िया किस्म के पौधे हैं पीछे धारणा है झरना --

घर बना है अर्थात कोई मंजिल तथा या बिल्डिंग तथा पौराणिक राजाओं के द्वारा कुछ बनाया गया है।

यह फोटो एक सड़क की फोटो है तथा पुल के ऊपर से यह ली गई है।

बेंच पर बैठे हुए बच्चे हैं जो यहां पर गौर से पढ़ रहे हैं तथा --

और एक व्यक्ति स गाड़ियों के बीच में से जा रहा है एक व्यक्ति टेम्पो के --